इस तस्वीर मे हमें एक मंदिर का द्वार दिखाई दे रहा है जिसके बाहर से एक व्यक्ति साइकिल पे से निकल रहा है वहाँ हमें सड़क भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर हमें एक कार्यालय के बाहर की दिखाई दे रही है जहाँ पे एक सफेद रंग की जिप्सी खड़ी है उसके पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने स्वेटर सफेद रंग की शर्ट व --

यह तस्वीर एक स्कूल विद्यालय के अंदर के भाग वाली है जहाँ पर एक मैदान बंजर सा पड़ा हुआ है यह--